यह एक योगा अकेडमी है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसने एक--

बहोत बड़ा गार्डन है यह एक खेतों की तरह है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक--

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक बस स्टैंड दिख रहा है।

सामने एक बिल्डिंग बनी है।

यहाँ सामने एक पिक्चर बनी है।

बोर्ड एक बोर्ड लगा है।

और एक टाइमिंग लिखा है।

बोर्ड लगा है ऑटोमैटिक वर्कशॉप --

सामने एक पिक्चर बनी है।

रेड कलर का और एक नाव भी खड़ी है।

ऑटो खड़ा है ब्लैक कलर का और--

यहां पे दो तीन लोग खड़े है।

जहां पे एक दुकान बनी है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब--

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक --

एक बोर्ड लगा है वहां लिखी है उत्सव भवन का।

सामने एक पिक्चर बनी है।

बड़ी बिल्डिंगे बनी है।

पेड़-पौधे हैं यह एक--

लगा है नाश्ता पॉइंट --

भगवान का मूर्ति है बहोत--

जिसमें एक गार्डन --

सामने एक आइस्क्रीम पार्लर दिख रहा है।

सामने एक पिक्चर बनी है।

वाइट और गोल्डन कलर की वाइट कलर की चादर बिछी है।

एक बोर्ड लगा है ब्राविंग स्टोरीज का।

सामने एक बोर्ड लगा है निर्मल नर्सरी का।